यहाँ पे ब्राउन कलर का कॉउंटर है | यहाँ पे तीन आदमी खड़े हुए है और तिन चेयर्स है और यहा पे एक पीछे एक गेट भी है |

ये एक नाला है। ये बहुत गन्दा है और इस का पानी बहुत गन्दा है। यहाँ पे एक मगरमच्छ भी है बड़ा सा काला सा और ये मगरमच्छ काफी मोटा है। यहाँ पे कुछ घास भी है। यहाँ पत्थर भी पड़े हुए है।

जिसके अंदर एक स्लाइडिंग झूला लगा हुआ है और पीछे बहुत सारे पेड़ पो पौधे है और ये झूला येलो और ब्लू कलर का है। इसमे सीढ़ी भी लगी है। ये झूला ज्यादा बड़ा नहीं है ये झूला थोड़ा छोटा है।

ये रोड बिल्कुल खाली है और बिल्कुल साफ सुथरी है और बीच में इसमें वाइट लाइनिंग जा रही है। ऊपर असमान भी नीला है और कुछ तारे भी है।